मूर्ति को देखने के लिए सब कोई जा रहें हैं। इस रास्ता से रास्ता है देखने के लिए जाने के --

ये एक शादी वाला घर का घर लगता है या फिर हॉल लग रहा है। इसमें अच्छे-अच्छे चेयर्स लगे हुए हैं। उसके बाद सोफ़ा उफ़ा गद्दा-उद्दा लगा हुआ है। आधे लोग स्टेज में आके बैठें हैं और ये बहुत ही शानदार घर लगता है और साइड में फूल-उल है।

ये एक बस अड्डा है जहाँ पे आदमी सफर करने के लिए दूर सफर करने के लिए बस अड्डे मे पहले जाना पड़ता है इसलिए यहाँ पे जहाँ जाएंगे वहाँ का बस आता है।

तब बस में बैठते हैं बैठने के लिए सीट है। आदमी आदमी सब सोया हुआ है जहाँ पे सो सूटकेस - उटकेस है सब के पास बैग उग अपना है जाने के लिए व्यवस्था करे के सो कर के --

पेड़-पौधा भी नजर आ रहा है और ये बहुत ही बड़ा मैदान है जहाँ पे आज भी जिससे कई रास्ता भी दिख रहें हैं। दूर-दूर साइड बढियां इसमें पेड़ दिख --